इसमें हमे फुगारे लगे हुए दिखाई दे रहे है यह लाल ब्लैक और इसमें हमे ऐ_सी लगे दिखाई दे रही है इसमें दो व्यक्ति बहार खरे हुए--